यहां पे मुझे एक टायरों की दुकान दिखाई दे रही है यहां पे और यहां पे बहुत सारे टायर दिखाई दे रहे है।

यहां पे मुझे एकए घर दिखाई दे रहा है बहोत ही सुंदर घर है नीचे चौंकुंटी टाइल लगाई हुई है।

फ्रिज दिखाई दे रहा है जिसमें गुफा की चॉकलेट रखी है कैडबेरी की चॉकलेट्स रखी हुई है।

और ए एक परदा भी दिखाई दे रहा हैं पर्दे के ऊपर बहुत सारे मेडल और फोटोएं भी रखी हुई हैं।

और ऊपर एक पंखा घूमता हुआ दिखाई दे रहा है पूरा नई नई पंखा नहीं है और ऊपर एक फर्श भी दिखाई दे रहा है।

यह एक महिला टीचर भी दिखाई दे रही है जो उनको गेम खिलवा रही है और मैदान के पीछे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं।

और एक बैठने वाला सोफा भी बेड पड़ा है बहुत ही सुंदर है ये एक ये बहुत सुंदर है ये।

यहां पे मुझे एक दुकान दिखाई दे रही है चाय ठेका दिखाई दे रहा है और ऊपर कपड़ों की दुकान दिखाई दे रही है।

ऊपर एक खंबा दिखाई दे रहा है जिसके साथ तार जुड़े हुए हैं।